यह एक दुकान है यहां पर कॉस्मेटिक --

चिप्स है बिस्किट है मिठाई है बहोत सारे चु कुरकुरे हैं नमकीन होते --

जो की बोहोत ही बरा हैं सुजाता कंपनी का हैं।

और झूले के बाद बहोत ही आदमी है एक आदमी जो की खड़े हुए है पानी में दो आदमी तीन आदमी है।

और पानी पीने वाला ग्लास भी रखा हुआ है।

यहां पर बाइक का रिसरकिल भी होता है और एक आंटी है जो की--

पानी पूड़ी बेच रहे है पूड़ी बेच रहे है पानी--

यहां पर इलेक्ट्रॉनिक मैन का लैब है।

बाहर की तरह बात कर रहे उसके ऊपर एक खरी है।

यह एक दुकान है जहां पर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट रखे हुए है।

एक प्रोडक्ट है जो की शैंपू है डब शैंपू है जो की लगाने से हेयर की--

और जस्ट सामने पुतले भी दो रखे हुए तीन पुतले और उसके अंदर में बहुत सारे आदमी हैं जो कि प्रोडक्ट लेने के लिए गए।

एक टी_वी_एस टाइप का बाइक है जिस पर दो एक आदमी बैठे हुए है एक पेट्रोल डालने वाले उसमें तेल डाल रहे है।

पत्थर से जैसे की पत्थर पे बहोत ही अच्छी तरह से फूल भी लगे हुए हे हरे-भरे।

यहां पर वाइट कलर का पेंट से स्कूल पेंट किया गया है।

और एक आदमी है जो कि बाइक से जा रहे हैं घर पे।